डाइनिंग टेबल है ट्री है और खुर्सी भी है उसमें बैठने के लिए और टा अ टॉर्च दिख रही है ब्लफ टाइप ।

एक पार्किंग है उसमें बहुत सारी गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की वाइट कलर की ड्रेस और वह--

जाली लगा हुआ है पीछे की साइड में बिल्डिंग बहुत सारी है और और घ घटर भी है और पानी निकलने के लिए।

ये एक आदमी दिख रहा है और पीछे की बाजू भी एक आदमी दिख रहा है आईने में से दरवाजे के उधर खड़ा है और एक--

इसमें तीन मंजिल की बिल्डिंग है उस पर अह अह और एक गेट है और बाजू में हीच का वो सब गार्डन टाइप है।